सामने ऐसी लगी हुई है। पर्दे लगे हुऐ हैं। एक सोफा पड़ा हुआ है। सामने लाइट जल रही हैं।

तीन आदमी खड़े हैं। एक के हाथ में हैलमेट है और बोर्ड लगा हुआ है। दूध है। क्रीम है और सब चीज यहाँ मिलती हैं।

एक म बस खड़ी हुई है जिसमें जय माता की फोटो लगी हुई है। एक रिक्शा है। इस रिक्शे के पास एक पेटी रखी हुई है तीन आदमी जा रहे हैं।